उसके ऊपर एक छत्री टाइप की लगी है यहाँ पर साइड में एक आदमी खड़ा है जिसने महरून कलर की जैकेट ब्लैक कलर की पेन्ट और सर पर वाइट और ब्लैक कलर की टोपी--

यहाँ एक बहुत बड़ा सा मैदान है मैदान के किनारे से एक व्हाइट कलर की दीवाल है जिस पर लोहे की जाल लगी हुई है उसके बगल में दो आदमी है एक आदमी ने व्हाइट कलर की शर्ट --

पेड़ के पीछे एक बिल्डिंग दिख रही है जो वाइट कलर की पेंट हुई है और सबसे ऊपर वाली छत पर एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है उस बिल्डिंग के ऊपर एक ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ--

यह एक रोड का किनारा है जहां पर रोड के किनारे वाइट कलर और ब्लू येलो कलर का डिवाइडर लगा हुआ है रोड के बीचो बिच एक पेड़ लगा हुआ है वहाँ पर दो ऑटो जा रही है।

यह एक बहुत ही बड़ा मैदान है मैदान के आसपार बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है पानी के किनारे एक बड़ा सा बहोत बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है उसके पास की जो एक बिल्डिंग है उस पर वाइट और येलो कलर का पेंट हुआ हैं ।

एक रोड का किनारा है जहाँ पर एक वाइट और ग्रे कलर की बिल्डिंग है बी बिल्डिंग के हर एक फ्लोर पर कई ए_ सी या लगी हुई है ए_ सी का जो कलर है वो वाइट कलर का है उसके नीचे एक रेड कलर की दुकान है।

और यहाँ पर एक बिल्डिंग है जो वाइट कलर की है और उसके सबसे ऊपर वाली छत पर ब्लू कलर से पेंट हुआ है। उस पर वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है। उसके बगल में एक टावर टाइप का है जो बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो सिल्व --

यह एक गैराज है जहाँ पर वाइट कलर की दीवारें हैं और वहाँ पर वाइट कलर की बाल्टी रखी हुई है यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है जिस पर ब्लैक कलर का पेंट हुआ है।

व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है और वह फूलो को टांग रहा हैं ।

इसमें लोहे की ग्रिल लगी हुई है ग्रिल के बगल में एक टावर है जिसमे बहुत सारे तार जा रहे है और नदी के उस पार बहुत सारे पेड़ दिख रहे है और यहाँ पे सूरज अस्त हो रहा हैं।

पौधे लगे हुए है जो की पिंक कलर के है जहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है खंभे पर एक वाइट कलर की लाइट लगी हुई हैं ।

यहाँ की जो दिवाल है उस पर वाइट कलर का पेंट हुआ है यहाँ पर एक मेज रखी है जिस पर रेड कलर का येलो कलर का ब्लू कलर का पैकेट रखा हुआ है और उस पर कुछ लिखा हुआ भी हैं ।

रोड का किनारा है जहां पर एक ठेला खड़ा हुआ है उस पर बहोत सारे फल रखे हुए है फल का जो कलर है रेड कलर का वाइट कलर का--

यहाँ एक बहुत बड़ा सा पार्क एरिया है यहां पर जो एक पक्का टाइप का बना हुआ है चौतरा उस पर वाइट कलर का पेंट हुआ है उ--